पास में ही एक--

लगा हुआ है।

घर के बाहर का दृश्य नज़र आ रहा है यहाँ पर गेट अभी फ़िलहाल बंद है।

डाक घर का चिन्ह भी बना हुआ है।